यहाँ पर मीठा तरह-तरह के सामान रखे गए हैं । यह एक काउंटर में रखा गया है ।

गेंदा का फुल है यह फुल काफी बड़ा-बड़ा है इस फुल पर काफी सुंगधित है।

यहाँ पर और एक बोलेरो खड़ी है जो बगल --

देवता का मूरत है। इस मू यह मूरत काफी बड़ा है। इस मूरत को एक ट्रेक्टर में ला भ उम् रखा गया है।

इस ए.टी.एम. पर शीशे की गेट लगी हुई है।